आजू बाजू पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

एक आदमी वाक कर रहा है।

जिसमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई गई है बिल्डिंग के सामने लोहे के बड़े बड़े ग्रिल पड़े हुए हैं।

होटल बहोत ही खूबसूरत है बहोत ही साफ सुथरी भी हैं।

किडनीया भी दिखाई दे रही है।